ये कोई कार सर्विस सेंटर या शोरूम है।

फूल के पौधे लगे हुए है इसमें ये बच्चा पाइप से पानी दे रहा है।